यहां पर आपको है हे मेंस के लिए सर्विसिंग की जाती है जिसमें हेयर कट --

फिटनेस टेंपर एक जिम है जिसमें काफी सारी मॉडल मशीन्स रखी हुई हैं।

यहां पर आप संडे को भी पैसे निकलवा सकते हैं किसी हॉलीडे पर भी पैसे निकलवा सकते हैं काफी अच्छी सुविधा ये--